और उसके आजू बाजू बड़े बड़े पेड़ भी है और बाहर टू व्हीलर भी है और ब्लैक कलर की गाड़ी भी खड़ी हुई और उसके--

वॉल का कलर येलो किया गया है और यहां पे दो गेट बनाए गए हैं और यहां पे ऊपर आसमान भी दिख रहा है और यहां पे छोटे बिछवाना लगाए हुए--

ये एक बड़ी सी नदी है और उसके बाजू रस्ता बनाया गया है जाने के लिए और यहां पे लेडिज जा रहे हैं और यहां पे इसके बाजू बड़े-बड़े पत्थरे छोटे पत्थरे भी है।

लोग भी है और रास्ते में अलग अलग शेप से टायर्स भी रखे हुए हैं और यहां पर छोटे छोटे हरी हरी घास भी उठी हुई है।

फूल के पोधे भी लगाये गये है पार्ट्स में अलग अलग कलर के फ्लावर भी ऑरेंज है येलो --

ये केन्द्र विद्यालय है स्कूल है यहां पे इसका गेट बंद है और राइट साइड में भी एक छोटा गेट और यहां पे ब्लू कलर का गेट ।

एक छोटी सी होटल है और वो आदमी इधर ही देख रहा है।

यहां पे रखा हुआ है यहां पे बहोत सारा सामान है मुठिया है छोटे छोटे मग्स है और यहां थैलों में भी समान है।

हेयर सलून है यहां पे कटिंग किया जाता है और यहां पे राइट साइड में भी दुकान है --

और यहां पे बहोत सारी सीमेंट रेती कांकरे टायर्स बहोत सारे फत्थरे भी गिरे हुए और यहां पे टी शर्ट भी गिरा हुआ है।

यह बड़ासा शोरूम है यहां पे अलग अलग जगह अलग अलग बाइक को रखा गया राइट साइड में बैठने के लिए चेयर्स भी है टेबल हैं।

और यहाँ पर दीवारों को भी टाइल्स बिछाया गये है और यहाँ बोहोत सारे फ्लावर और बोहोत से है।

बड़े बड़े पेड़ भी हैं और वहां लेफ्ट साइड में भी बहोत सारे लोग खड़े हुए और बिल्डिंग है गाड़ियां भी है यहां पे आसमान भी दिख रहा है यहां--